अंदर मकान बनाया गया है कॉले--

और एक यहाँ पे दो स्कूटर वगैरह लॉक रहा है।

पर्दा वर्दा सब लगा---

और उं उस गेट पर ऊपर से व्हाइट उं कलर में कुछ लिखा हुआ है।

बीच में मंदिर है और उसके पीछे सब हैं।

एक आदमी रेड कलर का पह--

और इसमें घर की एक डिजाइन

दुकान के में बहुत सारी सामान सुविधा है और आई साइड --

यह एक पार्क है पार्क के सामने आगे एक लड़का खड़ा हुआ है।

चार-पांच आदमी घूम रहा है और बहुत अच्छे पार्क लग रहे हैं।

बहुत सारा पेड़ काते काते हैं और आसमान दिख रहा है और फूल--

यह एक बहुत बड़ा मंदिर है मंदिर के ऊपर--

और गेट तक भी बहोत सारे लोग जा रहे हैं।

और इसी गेट के गेट लगा है इस घर के आगे ग्रिल --

एक बस लगा है उस बस पर बहुत सवारी चढ़े हैं और चढ़ने वाले हैं एक खड़ा है।

और इस साइड एक कार खड़ा है यहां पे एक लेडिस खड़ा है।

यहां पर फूल से टंगा हुआ है।

ए_ टी_ एम_ का नीचे व्हाईट कलर का पेंट है।

यह एक पार्क हैं पार्क में बहोत हरियाली हैं और बैठने वाला है सब बना हुआ हैं।

इसमें बहुत सारा आदमी आया हुआ है खा रहा है और बैठा है।

यह ग्रिल है जिस पेपर में निषेध लिखा है।